ये मेरे को कोई कैफे टाइप का लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर भी है कीबोर्ड भी है।

मेरे को मेडिसिन शॉप लग रहा है और यहाँ पे साइबर कैफे भी है आदमी सब आता है साइबर कैफे का काम करवाता है।

पर्ची पी_ डी_ एफ_ फोटो कॉपी आधार कार्ड पैन कार्ड सब बनता है यहाँ पे टिकट कटाना है कुछ ट्रेन का फ्लाइट का सब मिलेगा।

ये एक मिठाई की दुकान है यहाँ पे फ्रिज है बड़ा वाला फ्रिज है छोटा वाला फ्रिज है मिठाई रखने वाला गोदरेज है गेट है।

ये एक मेडिसिन शॉप है इस मेडिसिन शॉप का नाम है ओम मेडिसिंस और इस आदमी का हाथ भी टूटा हुआ है पट्टी बांधा हुआ है इसने--

आदमी ने मास्क पहना हुआ है लग रहा है ये कोरोना वायरस टाइम का फोटो है और भी बहुत चीज है।

ये एक बरगत का पेड़ है यहाँ पे मंदिर भी है मंदिर लाल कलर का है बरगत का पेड़ बहुत पुराना है।

ये मंदिर बहुत पुराना लग रहा है यहाँ का सीढ़ी बहुत बड़ा-बड़ा है औ यहाँ पर दो लड़के सीढ़ी चढ़ते हुए और आसमान का रंग थोड़ा फीका-फीका लग रहा है यह फोटो एडिटेड है।

और आपको भी अगर जाना है इस घाट पे तो एड्रेस मैं आपको बता दूंगा और ये देखो आसमान का रंग कितना अच्छा लग रहा है घाट का सीढ़िया भी बहुत साफ है लगता है यहाँ की साफ सफाई अच्छे से--

यह फोटो मेरे को होली के समय का लग रहा है सारे लोग होली खेल के एकदम पूरे देह में रंग वांग लगाए हुए हैं।

कोई लाल रंग लगाया है कोई पीला रंग लगाया है कोई गुलाबी लगाया है।

में लाइट चल रहे हैं लाल कलर का मशीन है लाल कलर का कार्पेट है और ये जिम चाइनीज जिम मशीन है ठीक है।

और बाहर में पल्सर बाइक लगे हुए हैं आदमी की भीड़ यहाँ जुटी हुई है और बाइक--

ये वाहन प्रदूषण केंद्र है यहां पे गाड़ियों की प्रदूषण की जाती है और इस दुकान का नाम है के_पी_एफ वाहन प्रदूषण केंद्र।

आदमी लोग जैकेट पहने हुए ठंडे की फोटो है और यहां पे पंखे लगे हैं लेकिन पंखे चल नहीं रहे हैं सब लोग अपना मैट बिछाकर ब्रज आसन कर रहे हैं।

ये दो मंजिला साड़ी की दुकान है यहां पे रंग बिरंगी साड़ियां मिलती हैं और दुकान में कस्टमर बैठे हैं दुकानदार बैठे हैं।

र यहाँ दुकान को सजाया गया है अच्छे से लगता है किसी ओकेजन है।